बहोत ज्यादे सोफे लगे हुए हैं।

में कुछ फर्नीचर के सामान रखे हुए हैं।

और दीवार पर बहोत कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दीवाल को व्हाइट कलर के पेंट से पेंट किया गया है।